यह एक वाटर पार्क की फोटो है जिसमें हमारे तिरंगे कलर की स्लाइड है।

और कुछ रंगीन दीवारें और कुछ अद्भुत चित्र दीवाल पर बने हुए हैं।

यह एक पिकनिक कैम्प की फोटो है जहाँ पर एक व्यक्ति एक काले कलर की --